देख सकते हैं पेड़ भी है लड़का जा रहा हैं अंदर। किला जैसा बना है पहाड़ का वहाँ। बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है। वो --

एक लड़का इसको नाप रहा है। यहाँ बहुत फूल और पेड़ हैं घास है।

हमारे भगवान हैं आस्था के प्रतीक हैं इसको भगवान का नाम लेते हैं।

ये जिम है। ये जिम करना बहुत ही अच्छी बात होती है बॉडी फिट होती है। यहाँ देख सकते हैं कोई नहीं --

आ ई बहुत सुन्दर है।

एक चर्च है। हालेलुइया हालेलुइया हालेलुइया। ये आस्था का प्रतिक है। इसे हरे --

और ये नवरात्रा का सीन है पीछे माँ का मूर्त है लोग आये हुए हैं पूजा कर रहे हैं।

घर के आसपास बाइक लगी हुई है सड़क खाली है पूरी तरह।